यह एक जामा मस्जिद है और कई सारे लोग वैठे हुए हैं और कई सारे लोग ।

यहां पर एक कैफे नजर आ रहा है कैफे का नाम है रोज कैफे ।

आ गा फूलों का चित्र चिपकाया हुआ है दीवार पर और ।

यहां पर चार लड़कियां दौड़ लगा रही हैं तीन लड़कियां हैं और एक लड़का हैं।

और अब तीन लड़कियों ने पीले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

पर एक लड़के ने लाल रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है लड़कियों ने छोटी एक डाली हुई हैं।

और एक कुर्सी और एक मेज भी रखा हुआ है मेज पर टिशू पेपर का स्टैंड रखा हुआ है।

और सामने दो बच्चियां भी खड़ी हुई हैं दो बच्चों के हाथ में ।

तीन लड़के दिखाई दे रहे है जिन्होंने बैग पहनी हुई है और एक।